फूलोंकी ताटा है ताटा मे --

लाल-लाल फूल है सफ़ेद फूल है येल्लो फूल है लाल फूल है।

ये मेत मेह ये बहुत सुंदर है।

सुंदर से सेखने के लिए होता है ये समय के लिए होता है। अच् --

मोक्ष मार्ग है अशोक चक्र आहे. सरनाधु है ये सर नधू मे महाविनिष्क्रमना है --

ये राजगड क्या करता है राजगड राजगड क्या करता है।

ये वाटर फॉल्स है ये वाटर फॉल्स में पानी रखना है ये पानी बहुत बहुत बहुत दूर से अब्ब-बो-ब दूर से रखना है फोटोज फोटो रखना है।

यह मिट्टी बहुत बहुत से निकाल करता है यह मिट्टी का बहुत अच्छा मिशनरी हैयह बड़ा मशीनरी है बड़ा मशीनरी इंजीनियरिंग है।